और उसका ऊपर में ये अभी दिखाई दे रहा है अह अम्म वायर और पेड़ पौधा लोग भी दिखाई दे रहा है और आसमान भी दिखाई दे रहा है।

और पेड़ लोग भी दिखाई दे रहा हैं और उसका पार करके भी वो पेड़ लोग भी दिखाई दे रहे हैं और आसमान भी दिखाई दे रहे हैं।

और वॉल कलर व्हाईट कलर का है लाइट कलर शेडो भी दिखाई दे रहे--

और ऊपर में दो टीना है और सेकेंड सेकेंड वाला लोग जो ये टीना का है और वाइट कलर से पेंट कर के है।

कि उसका बाहर में यह पेड़ पौधा भी है और आगे में पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है।

और ये सोफा सिल्डिंग भी दिखाई दे रहा हैं।

ये शीशा से बनाने वाला है और बाहर में भी पूरा टाइल्स लगा के है।

और नीचे में भी बहुत सारा पेड़ लोग भी है और सामने में गार्ड लोग भी है।

ये जो एक बरा सा स्टोर है और यहां में जो बाहोत सारा समान दिखाई दे रहा है अंदर में।

और सामने मे भी ये इलेक्ट्रिक वायर लोग दिखाई दे रहे--

ये जो एक रूम का अंदर है और यहां में जो दो बिस्तर दिखाई दे रहा है और उसका ऊपर में जो कंबल और भी पैक करके रखा है।

और जो वो भी लकरी से बनाने वाला है वाल पे।

और ये आसमान और बिल्डिंग लोग भी दिखाई दे रहा है।